जहां आदमी लोग मे से दो तीन जन पुलिस भी खड़े हैं और पुलिस लोग माक्स पहने हुए हैं।

इस पिक्चर में एक आदमी जिम करते हुए दिख रहा है जहां --

और दीवार पे एक घड़ी भी टंगा हुआ है।

और उधर पे एक क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम ब --

फर्नीचर किए गए हैं जहां पे ढेर सारा नमकीन बिस्किट बिस्किट रखा गया है और यहां पे --

हैं और यहां पे बड़े बोर्ड में लिखा गया है सर वलसाड नगर सेवा सदन --

और ये इस इसके बाहर एक टेम्पा भी खड़ी हुई है।

यह पिक्चर कोई एक दुकान का है जहां पे--

और फेअर लवली पोंड्स का पाउडर फेयर हैंडसम ढेर सारी ब्यूटी और कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है।

और यहां पे ढेर सारी लाइट जली हुई है और पिंक कलर का गुब्बारा भी लगाया गया है इस पिक्चर में।

येलो और ब्लैक से बनाया हुआ है और मंदिर का जो बाउंड्री है--

वो पिंक कलर का दीवार से बनाया गया है और मंदिर के बाजू में हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए है और ऊपर --

भवन की दीवार को दिखाती है जो नारंगी रंग से पुती हुई है दीवार पर कोई जगह पर पेंट उखड़ चुका है ईंट--

लकड़ी की चौखटे बेंच और निर्माण सामग्री पड़ी हुई है द ढाई और --

के बाहर एक इको वैन खड़ी है और बिल्डिंग के बाहर राइट साइड में एक कार खड़ी हुई है।

देयर शटर की कलर ब्लैक है और यहां पे खाली मै --

इस पिक्चर में एक देशी ढाबा है इस देशी ढाबा का नाम पटेल नॉनवेज ढाबा है।

जो सुंदर रोशनी में चमक रहा है मंदिर की रचना बहुत ही जिटल नक्श।

जिनके ऊपर ध्वज लहरा रहे हैं मंदिर के बाहर संगमरमर।

और विशाल पंगाण दिखाई दे रहा है जिसमें कोई श्रद्धालु --

झरना के सामने तीन आदमी खडे हुए हैं और --

हरी भरी पेड़ पौधे लगाया हुआ है और यह एक खुला आसमान है।

एक पेड़ भी लगे हैं बड़े बड़े हरे हरे पेड़ भी लगे है।

इस पिक्चर मे छोटे बच्चो लोग का स्कूल है जहां कलरफुल --

स्टूल रखे गए हैं और नीचे बैठने के लिए मैट रखे गए हैं और इस--

इस पिक्चर में एक कमरे दिखाई दे रहें जहां कमरे के अंदर कई सारे जिम के टूल्स --

एक ऐ_सी भी है और यहां पर सारे लाइट जल रहे हैं और यहां पे एक पंखा भी है।

कुछ कुछ कार के आगे कुछ कुछ व्यक्ति खड़े हुए और --

इस मैदान के आजू बाजू में पेड़ झाड़ पौधे भी लगे हुए हैं काफी हरे भरे हैं।

और यह मैदान एकदम साफ सुधरा और क्लीन दिख रहा है और यहां पे कुछ पॉइंट भी है।

हल्की फुल्की धूप है और यहां पर दो साइकल भी खड़े हैं।

पाउच भी रखा हुआ है और दोनों साइकिल गियर वाली साइकिल है।

और यहां पर इस पिक्चर में एक सूरज भगवान भी उगे हुए हैं और यहां पे आजू बाजू में बिल्डिंग भी है।

यहां पे कई सारे व्यक्ति लाइन लगा के खड़े हुए हैं और ये--

और यहां पे कई सारी बाइक खड़ी हुई है और एक आदमी हेलमेट पहनाहुआ है और यहां पे --

के सामने ढेर सारे बैनर लगे हुए हैं और एक बैनर में लि--

और तीसरे बैनर में डिलीट करके कुछ लिखा है और ये सब --

मैथल मिथिला बुक सेंटर है दुकान के अंदर और बाहर --

दुकान के सामने कुछ ग्राहक खड़े हैं एक व्यक्ति मास्क पहने हुए हैं जबकि दूसरा व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हैं।

जिससे यह स्थान पहाड़ी क्षेत्र प्र तीत होता है नीचे की ओर एक खुला मैदान है जहां कुछ पेड़ और झाड़ियां भी नजर --

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है दुकान का नाम सोनी हसमुखलाल --

बोर्ड लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है मिस्टर वेट पेट क्लीनिक शॉप ।

बड़ी खिड़कि या बालकनी है जिसे प्राकृतिक रोशनी आ रही है और बाहर का दृश्य दिख रहा है।

प्रतीत होती है जिनमें बस।

यह एक रेलवे ट्रैक का फोटो है जहां पे रेलवे ट्रैक के ऊपर माल गाड़ी खड़ी हुई है और --

जहां पर दो बच्चे खड़े हैं और एक बच्चे ने मास्क पहना हुआ है और--

रेड व्हाइट कलर के टेंट लगे हुए है और टेंट के अंदर --

मटर आलू प्याज लहसुन दिख रहे हैं।

औरत लोग खड़े हैं और बैठे हैं इस पिज्जर दुकान के बाजू में एक बर्गर किंग कर के दुकान है और इस --

यह पिक्चर एक रनिंग ट्रैक का है जहां पे--

तीन बच्चे दौड़ रहे हैं और एक बच्चा शर्ट पहना है।

और वहां पे एक हाईवे भी है रनिंग ट्रैक के बाजू में --